बहोत सारे लोग फोटो खींच के छोड़ते है।

ये घर है। इस घर यह --

हर एक एक कैदी को इसी में बंद किया जात --

सजा हुआ है लोग सब डांस कर रहे है।

यह इसके पीछे एक फ्लावर भी है। ये देखिये कितना अच्छा लग रहा है देखने में बहोत अच्छा है ये घर --